ये प्लस का चिन्ह क्रिस्चियन का है। यहाँ पर कई लोग हैं।

इस जगह में फूल खिले हुए हैं और एक खंबा लगा हुआ है और नीचे घास लगी हुई है।

यह एक लड़का है और बगल में हेलमेट भी रखा हुआ है।